दूसरे स्टेचू ने रेड कलर का हाफ पैंट पहना हुआ है अंदर की तरफ बहोत सारे कपड़े दिखाई दे रहे हैं।

इस इमेज में हमें एक मस्जिद दिखाई दे रही है जो सफ़ेद रंग की है उसमें कुछ डिज़ाइने बनी हुए --

और हरे रंग से लिखा हुआ है अंदर की तरफ रेलींग लगी हुई है जो सफेद रंग की--

इस इमेज मे हमे एक दुकान दिखाई दे रही है दुकान के बहार केले के पेड़ दे लगे हुए दिखाई दे रहे है सामने की तरफ लकडे की टेबल दिखाई दे रही है दुकान के बहार।

सामने की तरफ खाली मैदान दिखाई दे रहा है जिसमें कुछ घास लगी हुई है और एक घर दिखाई दे रहा है जो हरे रंग का है।

सामने की तरफ एक पंखा लगा हुआ है और एक पोस्टर लगा हुआ है जो सफेद रंग का है।